यहाँ कोई कमी नहीं है। --

यहाँ पे आके लोग पूजा की थाली लेके क्रिश्चियन लोग का ये जगह है और यहाँ क्रिश्चियन --